ये काफी बड़ा चर्च है यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है ये चर्च मंदिर है जिसके आसपास चर्चिंग है। यहाँ पर आसपास--

यहा पर भी एक बड़ा सा कॅफे है जिसमे आइस क्रीम रखी हुई है चॉक्लेट रखी हुई है दूध दही रखी हुए है चाय रखी हुई है कॉफी रखी हुई है यहा पर पोया मिलता है लंच कर सकते हो ब्रेक फास्ट कर सकते हो डिनर कर--

यहाँ कॅफे चाय बनाई जाती कॉफी बनाई जाती पोहा बनाया जाता है यहाँ पर दो बाल्टी रखी हुई है खटिया रखी हुई है स्कूटी रखी हुई है और दरवाजा लगा हुआ--